इस रूम में बेड लगे हुए नजर आ रहे हैं बेड के बगल में ही कुछ तस्वीरें रखी नजर आ रही हैं।

बेड के बगल में कुर्सी भी लगी नजर आ रही है यह देखने में काफी अच्छा लग रहा है यह रूम देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है।

रखे हुए नजर आ रहे हैं इस दुकान में दो लड़का कपड़ा खरीदता हुआ नजर आ रहा है।

यह एक मॉल की तस्वीर नजर आ रही है इस मॉल का नाम ट्रेंड्स है।

यहां पे विभिन प्रकार के कपड़े मिलते होंगे इस मॉल के बाहर बहुत सारी गाड़ियां लिविंग नजर आ रही हैं।

इस मकान में हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल का नाम क्रिस्ना हॉस्पिटल है।

यह एक खेत की तस्वीर नजर आ रही है इस खेत में--

जो कि देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं ये कि हरियाली की प्रतीक है।

और हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है यह बहुत ही अच्छी बात--

इस दुकान के बाहर ही एक लड़का साइकिल चलाता नजर आ रहा है और उसके बगल में ही एक बाइक चलाता नजर आ रहा है।